ये आपको ग्राउंड मिल जाएगा यहाँ पास आपको गाड़ी पार्क करने पार्किंग के लिए यहाँ बैठने के लिए नारियल खजूर पेड़ भी मिल जाएगा--

ए फल दूकान है इसमे अंगूर बेर केला एप्पल यहाँ पास कुर्सी रखाया है सीट वाला दुकान है यहाँ आपको मिल जायेगा हर चीज इस फल मे --

इंजन बन जायेगा आपका गाड़ी स्कूटी बाइक बन जायेगा आपका बोर्ड हैं सीट वाला दुकान हैं शटर हैं।